लेडीज उधर पीछे में खड़ी हैं और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं जेंट्स लोग लड़का हरका और पीला कलर का कुछ ओढ़े हुए हैं अ कैप है |

कुछ अम दिखाई दे रहा है बतख जैसे वाइट कलर का।

और इधर साइड में भी कुछ छोटे-छोटे फूल दिखाई दे रहा है जिसे सजाया हुआ है और ऊपर में लाइट्स भी जल रहा है।

ये लोग भी दिखाई दे रहे है और यहाँ पे --

यहाँ पे एक पीला कलर का घर जैसे दिखाई दे रहे स्कूल जैसे --

सामने मंदिर में बहुत सारे लाइट जल रही है यहाँ पर कुछ पर्दे जैसे भी दिखाई दे रहे हैं जो व्हाइट कलर का --

रेड कलर का एक मशीन दिखाई दे रहा है एक सिलाई करने वाला इस साइड में भी --

विंडोज़ दिखाई दे रही साइड में भी एक बिल्डिंग दिखाई --

और यहाँ पे पाथर बहोत सारे दिखाई दे रहे है यहां से पानी गिर रहा है।

गेट जैसा दिखाई दे रहा है अंदर में भी एक गेट है जिसका --

एक लेपटॉप जैसा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे --

लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे कुछ --